chimera का उपयोग करके structure manipulation पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम chimera विंडो पर संरचना खोलना सीखेंगे
संरचना को चलाना घुमाना और ज़ूम करना स्केल और क्लिप करना और डिस्प्ले को बदलना
इस ट्यूटोरियल का अनुसरण करने के लिए आपको स्नातक स्तर की biochemistry का ज्ञान होना चाहिए या structural biology से परिचित होना चाहिए
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu linux os वर्जन 1404 और chimera वर्जन 1102 mozilla firefox ब्राउज़र 350 और एक कार्यकारी इन्टरनेट कनेक्शन
ucsf chimera आणविक संरचनाओं और पारस्परिक विज़ुलाइज़ेशन के लिए एक सॉफ्टवेर है
chimera कैलिफ़ोर्निया यूनिवर्सिटीसेन फ्रांसिस्को में resource for biocomputing visualization and informatics द्वारा विकसित किया गया है
ज्यादा जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है
chimera विंडो को शुरू करने के लिए डेस्कटॉप के chimera आइकन पर डबल क्लिक करें
एक rapid access इंटरफ़ेस खुलती है
rapid access विंडो आपको बहुधा प्रयोग किये गए डाटा और टूल्स एक्सेस करने देती है
विंडो के निचले दायें कोने में lightning bolt आइकन पर क्लिक करें
यह विंडो graphics दर्शायेगा 3d structures और अन्य डाटा इस विंडो पर दिखाई देते हैं
lightning bolt आइकन पर क्लिक करके दो विन्डोज़ के बीच टॉगल कर सकते हैं
अब मैं graphics विंडो पर वापस जाती हूँ
chimera में अनेक कार्य दो तरीकों से पूरे किये जाते हैं
पहला menu bar का उपयोग करके जो कि chimera विंडो के ऊपरी हिस्से में स्थित है
दूसरा command line पर कमांड्स देकर
command line दिखाने के लिए favorites मेनू पर क्लिक करें
ऊपर से नीचे जाएँ और command line विकल्प पर क्लिक करें
एक command डायलॉग बॉक्स विंडो के निचले हिस्से में दिखाई देता है
किसी खास कार्य के लिए commands टेक्स्ट बॉक्स में लिखे जाने होते हैं
हम इस विशेषता के बारे में और अधिक आने वाले ट्यूटोरियल्स में सीखेगें
विंडो को छोटा या बड़ा करने के लिए विंडो के किसी भी कोने को पकड़कर खींचें
अब देखें कि एक protein संरचना को कैसे खोलते हैं
आप इसे तीन प्रकार से कर सकते हैं यदि आप इन्टरनेट से जुड़े हैं तो file मेनू पर क्लिक करें
ऊपर से नीचे जाएँ और fetch by id विकल्प पर क्लिक करें
स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स खुलता है
संरचना को निकलने के लिए आप अनेकों डेटाबेसेस को कनेक्ट कर सकते हैं
प्रदर्शन के लिए मैं एक protein संरचना दिखाना चाहती हूँ
मैं विकल्पों से pdb चुनुगीं आप जिस protein अणु को दर्शाना चाहते हैं उसका चार अक्षर pdb code टाइप करें
मैं 1zik one z i k टाइप करुँगी
ये leucine zipper प्रोटीन के लिए pdb कोड है fetch बटन पर क्लिक करें
डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शन विंडो पर protein का एक रिबन प्रदर्शन दिखाई देगा
हम संरचना को निकालने के लिए command भी टाइप कर सकते हैं
command line टेक्स्ट बॉक्स में open 1zik टाइप करें
प्रदर्शन विंडो पर संरचना खोलने के लिए enter दबाएँ
इन्टरनेट से ना जुड़े होने पर आप पहले से ही डाउनलोड की हुई pdb फाइल खोल सकते हैं
स्क्रीन पर मौजूद संरचना को मिटाने के लिए: favorites मेनू में ऊपर से नीचे जाएँ और model panel विकल्प पर क्लिक करें
model panel डायलॉग बॉक्स खुलता है
model id पर क्लिक करें इसके बाद close विकल्प पर क्लिक करें
model panel विंडो को बंद कर दें
अब मैं दिखाउंगी कि pdb फाइल को कैसे डाउनलोड किया जाता है
आपको pdb फाइल डाउनलोड करने के लिए एक कार्यकारी इन्टरनेट कनेक्शन की जरुरत पड़ती है
file मेनू में ऊपर से नीचे जाएँ और fetch by id विकल्प पर क्लिक करें
एक डायलॉग बॉक्स खुलता है
डायलॉग बॉक्स में ऊपर से नीचे तक जाएँ
web page बटन पर क्लिक करें
pdb database वेब पेज ब्राउज़र में खुलता है
यदि आप protein के लिए pdb कोड जानते हैं तो इसे दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करें या फिर protein का नाम टाइप करें
मैं leucine zipper के लिए pdb कोड जानती हूँ अतः मैं टेक्स्ट बॉक्स में 1zik टाइप करुँगी
go बटन पर क्लिक करें
पेज पर ऊपर से नीचे जाएँ
पेज के दाहिने कोने में स्थित download files बटन पर क्लिक करें
ड्रॉपडाउन मेनू से pdbfiletext विकल्प पर क्लिक करें
एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है
save file विकल्प पर क्लिक करें
ok बटन पर क्लिक करें
डाउनलोड की गयी pdb फाइल अब downloads फोल्डर में सेव की जाएगी
chimera विंडो पर वापस जाएँ
डायलॉग बॉक्स को बंद करें
पहले से ही डाउनलोड की गयी pdb फाइल को खोलने के लिए file में open विकल्प पर क्लिक करें
फोल्डर पर जाएँ 1zikpdb फाइल चुनें
open बटन पर क्लिक करें
पैनल पर leucine zipper का मॉडल प्रदर्शित होता है
डिफ़ॉल्ट रूप से दो peptide chains ग्रे रिबंस की तरह प्रदर्शित होती हैं
संरचना को पैनल पर लाने के लिए माउस बटन का उपयोग करें
रोटेशन के लिए बायाँ माउस बटन
मध्य माउस बटन xy translation नियंत्रित करता है
दायाँ माउस बटन या माउस व्हील ज़ूम इन या ज़ूम आउट करने के लिए
संरचना की पारस्परिक स्केलिंग और क्लिपिंग के लिए: favorites menu से side view विकल्प का उपयोग करें
एक viewing window खुलती है
संरचना का एक छोटा प्रारूप विंडो पर खुलता है
बायीं तरफ पीला वर्ग दर्शक की आंख की स्थिति दर्शाता है
छोटे वर्ग को बाएं माउस बटन का उपयोग करके चलने की कोशिश करें
इसको क्षैतिज स्थिति में खींचते हुए scale factor समायोजित करें
आंख की स्थिति को डबल क्लिक करने से कैमरा मोड बदलने का मेनू प्रदर्शित होता है
clipping planes अर्थात दो उर्ध्वाधर रेखाओं को बाएं माउस बटन का उपयोग करके चलायें
विंडो पर और भी प्रदर्शन नियंत्रण हैं जिन्हें आप जाँच सकते हैं
viewing window को बंद करें
अब हम संरचना में परिवर्तन करना सीखेंगे
स्टेप संरचना के उस भाग को चुनना होता है जिसमें हम संशोधन करना चाहते हैं
अभी के लिए मैं पूरी protein संरचना को atoms की तरह दर्शाना चाहती हूँ
मेनू बार में select मेनू पर क्लिक करें
मेनू बार में select मेनू हमें संरचना के अलगअलग भाग चुनने देता है
जैसे कि chain element residue ligand आदि
तथापि यदि select मेनू से कुछ भी नही चुना जाता तो इसका मतलब है कि हमें पूरी संरचना में संशोधन करना है
अब actions मेनू पर जाएँ और विकल्पों से atoms/bonds चुनें
सबमेनू से show पर क्लिक करें
हम स्क्रीन पर परमाणुओं और संरचना के भागों को रिबंस की तरह भी देखते हैं
अब रिबंस को मिटने के लिए action मेनू से रिबंस को चुनें
फिर hide विकल्प पर क्लिक करें
अब पूरी संरचना स्टिक्स डिस्प्ले की तरह दिखाई देती है
अब संरचना का संशोधन थोड़ा और करते हैं
निम्न स्टेप्स इसे बॉल और स्टिक्स डिस्प्ले में बदल देंगे
actions मेनू पर क्लिक करें
ऊपर से नीचे atoms/bonds पर जाएँ
सबमेनू से ball and stick चुनें
ध्यान दें की संरचना बिना हाइड्रोजन परमाणुओं के है
हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ने के लिए tools मेनू में ऊपर से नीचे जाएँ
structure editing पर क्लिक करें
सबमेनू से add hydrogens विकल्प चुनें
डायलॉग बॉक्स में दर्शाए गए की तरह चुनाव करें
ok बटन पर क्लिक करें
देखें की अब संरचना hydrogen परमाणुओं के साथ दिखाई देती है
सामान्यतः protein संरचना जल अणुओं के साथ जुड़ी होती है
जल अणुओं को छिपाने के लिए select मेनू पर जाएँ फिर residue पर ऊपर से नीचे जाएँ hoh विकल्प पर क्लिक करें
स्क्रीन को देखें सभी जल अणु हाईलाइट हो गये हैं
actions मेनू पर जाएँ फिर ऊपर से नीचे atoms\bonds पर जाएँ और hide विकल्प पर क्लिक करें
ये संरचना से जल अणुओं को छिपा देगा
मेनू बार के presets विकल्प में डिस्प्ले को बदलने के लिए कुछ और भी विकल्प होते हैं
जब आप interactive 1 विकल्प पर क्लिक करते हैं: संरचना रिबंस और भिन्न रंगों में दोनों peptide chains में दिखाई देती है
interactive 2 डिस्प्ले को atoms में बदल देगा
interactive 1 डिस्प्ले पर वापस जाएँ
हम चयनपुर्वक peptide chains का रंग भी बदल सकते हैं
select मेनू में ऊपर से नीचे जाएँ और सबमेनू से chain a चुनें
chain a अब हाईलाइट हो जाती है
actions मेनू पर जाएँ फिर कलर पर जाएँ पीला चुनें
चेन a अब पीले रंग में दिखाई देती है
चुनाव को हटाने के लिए ctrl की को दबाएँ और chimera विंडो पर खाली जगह में क्लिक करें
अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं
chimera विंडो से निकलने के लिए file मेनू पर जाएँ और quit विकल्प पर क्लिक करें
इसे सारांशित करते हैं इन ट्यूटोरियल में हमने chimera विंडो में संरचना को खोलना व संरचनाओं के लिए फाइल डाउनलोड करना सीखा है
संरचना को चलाना घुमाना और ज़ूम करना स्केल और क्लिप करना
मेनू बार में मेनूज़ उपयोग करके डिस्प्ले बदलना
जल अणुओं को हटाना और hydrogens जोड़ना
नियत कार्य के लिए pdb डेटाबेस से leucine zipper की pdb फाइल डाउनलोड करें
file मेनू में open विकल्प का उपयोग करके chimera विंडो पर pdb फाइल खोलें
परमाणुओं के डिस्प्ले को wire में और सभी aromatic rings को disks में बदलें
आपका पूर्ण नियत कार्य निम्न प्रकार दिखेगा
निम्न लिंक का वीडीयो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है
कृपया इसको डाउनलोड करें और देखें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाएं चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सर्टिफिकेट देती है
ज्यादा जानकारी के लिए हमें लिखें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है
इस मिशन पर अधिक जानकारी दिए हुए लिंक पर उपलब्ध है